और तारे भी है थोड़ी बहोत लगी हुई।

प्लास्टिक में पैक करके तय करके उन्हें पार--

इस फोटो में हमें एक किसी के किचन का दृश्य दिखाया गया है।

सामने पंडित जी एक लड़का और एक लड़की है जो की एक दूसरे के पल्लू को फांद रहे हैं लड़के जी--

ऊपर की तरफ अनार केले लटके हुए है और पीछे की तरफ बहुत सारे फ्रूट्स हमें दिख रहे है।

और बहुत से लोग भी हमें दिख रहे हैं जो कि इन सब्जियों को खरीद रहे हैं कोई बेच रहे हैं और ऊपर से अच्छी तरह से ढका गया है कपड़ों--

फोटो में हम अंदर को एक गार्डन देख रहे है जहां पे बहोत बहोत बड़े पेड़ है सामने की तरफ हम एक फाउंटेन भी दिखाई दे रहा है जोकि अभी बंद पड़ा है।

फ्लोर पर व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है और इस लकड़ी की सोफे में बहुत से अच्छे अच्छे दृश्य बनाया गया है जो हाथों के द्वारा बनाया गया है इसे अच्छी तरह से पालिश किया गया है।

तो इस फोटो में हम दिख रहे हैं आज सामने की तरफ कुछ बड़ी बिल्डिंग्स नीचे की तरफ एक बहोत बड़ा ग्राउंड हैं राइट साइड कुछ लोग--

खराब हो चुका है और पीछे की तरफ बहुत-बहुत लंबी-लंबी पहाड़ियां भी दिखाई दे रही--

तो इस फोटो में हम किसी पहाड़ों का सुंदर दृश्य दिख रहे हैं सामने की तरफ थोड़े बहोत पेड़ है और उसके पीछे बड़ी बड़ी पहाड़ियां हमें दिखाई दे रही है।